काउंटर बनाया हुआ है बेसिन लगाया हुआ है जो हैंड वॉश करने के लिए--

बगल में दो लैपटॉप है एक लैपटॉप खुला है।

उसमें बहोत सारा साड़ियां रखा हुआ है एक साथ और बहोत तरह तरह का कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा सोफा लगाया हुआ है बैठने वाला--

उसपे एक बड़ा सा साड़ी खोल दिया गया है ओ भी ब्लू कलर का और उसके ऊपर भी रंग बिरंगे साड़ियां रखा हुआ--

स्टेज के ऊपर कई सारा दृश्य दिख रहा है जो कोई आदमी बना हुआ है उस पे बहुत सारा लाइट जल रहा है ब्लू कलर का रेड कलर का।

जिसपे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं कोई मोफलर बान्हा है तो कोई टोपी लगाया हुआ है।

बाहर में ऐनक भी लगाया हुआ है जो बाहर का दृश्य अंदर देख रहा--

बहुत सारे आदमी ने जो लाइन बनकर खड़े हैं एक साथ कोई बूढ़े हैं तो कोई जवान है और मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं।

साड़ी रखा हुआ है कपड़ा रखा हुआ है और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं इसमें।

एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है वाइट कलर का।

पर बहोत बड़ा सा दुकान का दृश्य दिख रहा है।

कुछ महिला है तो कुछ पुरुष है और बगल में भी बड़ा बड़ा सा घर बनाया हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं छोटे छोटे रैक बनाया हुआ है।

उसके अंदर रंग बिरंगे फूले रखा हुआ और ऊपर से झालर टांगा हुआ है फूल का।

नीचे गेट लगाया हुआ है और उसका रेलिंग का कलर रेड और ब्लू से किया हुआ है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और बगल में और भी घर बनाया हुआ है और वो भी खपड़ा का छाया हुआ है ऊपर टंकी लगाया हुआ है ब्लैक कलर का।

हाथ में बंदूक लिया है कोई और छोटा छोटा पेड़ पौधा है।

गले में आई कार्ड लगाई है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है।

ऊपर बड़ा सा खेत का दृश्य दिख रहा है।

बड़ा सा कंप्यूटर सेंटर का दुकान का दृश्य दिख रहा है ऊपर और नीचे।